इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे क्वेरी विजार्ड का इस्तेमाल करके सरल क्वेरीस बनाएँ फील्ड्स चुनें फील्ड्स का वर्गीकरण क्रम निर्धारित करें और एक क्वेरी के लिए खोज मापदंड या नियम प्रदान करें
चलिए सबसे पहले सीखते हैं की क्वेरी क्या होती है
क्वेरी डेटाबेस से विशिष्ट सूचना पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं
दूसरे शब्दों में हम डेटाबेस से कुछ डेटा के लिए क्वेरी कर सकते हैं जो एक दिए हुए मापदंड से मेल खाता है
उदाहरणस्वरुप अपना परिचित उदाहरण लाइब्रेरी डेटाबेस लेते हैं
हमने लाइब्रेरी डेटाबेस में पुस्तकों और सदस्यों की जानकारी संचित की है
अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस से पुस्तकालय के सभी सदस्यों के लिए क्वेरी कर सकते हैं
या हम डेटाबेस से उन सभी पुस्तकों के लिए क्वेरी कर सकते हैं जो पुस्तकालय में नहीं है
चलिए देखते हैं कि बेस का इस्तेमाल करके कैसे हम एक सरल क्वेरी बनाते हैं
हमारा उदाहरण है कि पुस्तकालय के सभी सदस्यों को उनके फोन नम्बर के साथ सूचीबद्ध करना
हम लाइब्रेरी डेटाबेस में हैं
आपको सम्भवतः अब तक पता होगा कि इसे कैसे खोलें
चलिए बाएं पैनल पर क्वेरीज आइकन पर क्लिक करते हैं
दायें पैनल पर हम तीन विकल्प देख सकते हैं
चूँकि हम पहले सरल क्वेरी बना रहे हैं हम एक सरल और तेज़ तरीका चुनेंगे
और यह क्वेरी विजार्ड का इस्तेमाल करके होगा
जटिल क्वेरीस बनाने के लिए बेस हमें बहुत ही सरल विकल्प प्रदान करता है जैसे कि क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू और क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू जिसके बारे में हम आगे जानेंगे
अभी के लिए उसे विजार्ड टो क्रिएट क्वेरी पर क्लिक करते हैं
अब हम एक पॉपअप विंडो देखते हैं जिसके उपर क्वेरी विजार्ड लिखा है
बायीं तरफ हम 8 स्टेप्स देखते हैं जिनको हम देखेंगे
हम स्टेप 1 में हैं फील्ड सिलेक्शन
दायीं तरफ हम लेबल टेबल्स के नीचे एक ड्रॉप डाउन बाक्स देखेंगे
यह वह है जहाँ से हम डेटा स्रोत चुनेंगे जिसकी हमें इस क्वेरी से आवश्यकता है
चूँकि हमारी उदाहरण क्वेरी पुस्तकालय के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध करने के लिए है हम ड्रॉप डाउन बॉक्स में से Tables मेंबर्स पर क्लिक करेंगे
अब चलिए बायीं तरफ अवेलेबल फील्ड्स सूची में नामे फील्ड पर क्लिक करते हैं और इसे दायीं तरफ सूची बॉक्स में स्थानांतरित करते हैं
अगला बायीं तरफ फोन फील्ड पर क्लिक करते हैं और इसको दायीं ओर स्थानांतरित करते हैं
ध्यान दीजिये कि सभी फील्ड्स को दायीं तरफ स्थानांतरित करने के लिए हम डबल एरो बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं जोकि दायीं तरफ निर्देश कर रहा है
अब चलिए नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं
अब हम स्टेप 2 में हैं सॉर्टिंग आर्डर
चूँकि हमारी क्वेरी का उत्तर सदस्यों की सूची और उनके फोन नम्बर्स हैं हम इसे जैसे हैं वैसे ही छोड़ सकते हैं
या हम सूची को सदस्यों के नाम के आधार पर क्रम में लगा सकते हैं
बेस विजार्ड हमें एक समय में उत्तर में 4 फील्ड्स को क्रम में लगाने की अनुमति देता है
अभी के लिए सबसे उपर के ड्रॉप डाउन बॉक्स में क्लिक करते हैं
और membersनामे पर क्लिक करिये
हम यह भी चुन सकते हैं की यदि नाम आरोही या अवरोही क्रम में लगाने हैं
चलिए असेंडिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं
और अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं
स्टेप 3 सर्च कंडीशंस
यह स्टेप मदद करेगा यदि हम अपने उत्तर को कुछ शर्तों पर निर्धारित करके बाध्य करना चाहते हैं
उदाहरणस्वरुप हम उत्तर को केवल उन सदस्यों के लिए निर्धारित करके बाध्य कर सकते हैं जिनका नाम अक्षर र से शुरू होता है
इसके लिए हम फील्ड्स ड्रॉप डाउन बॉक्स में क्लिक करेंगे और membersनामे पर क्लिक करे
अब कंडीशन ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें
विभिन्न कंडीशंस पर यहाँ ध्यान दीजिये चलिए लाइक पर क्लिक करते हैं
वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में कैपिटल र और एक प्रतिशत चिन्ह टाइप करते हैं
इस तरह से हम अपनी क्वेरी में सरल और जटिल शर्तों को ला सकते हैं
चलिए अब सभी सदस्यों को सूचीबद्ध करने के लिए वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में से R डिलीट कर देते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं
ध्यान दीजिये कि हम सीधे स्टेप 7 पर गये हैं
ऐसा इसलिए क्योंकि हम केवल एक टेबल से एक सरल क्वेरी बना रहे हैं
और हमारी क्वेरी जानकारी देगी नाकि सार
समरी क्वेरीस सभी फंक्शन्स से और समूहीकरण करके डेटा देती है
कुछ उदाहरण हैं सभी सदस्यों की संख्या या सभी पुस्तकों के दाम का जोड़
हम इनके बारे में आगे सीखेंगे
ठीक है अब यहाँ एलियासेस निर्धारित करते हैं
मतलब चलिए परिणामी सूची में उपयोगी या विवरणात्मक लेबल्स या शीर्षक प्रदान करते हैं
अतः नामे फील्ड के पास अलियास मेंबर नामे हो सकता है और फोन फील्ड के पास अलियास फोन नंबर हो सकता है
अतः चलिए इन नई एलियासेस को इन दो टेक्स्ट बॉक्सेस में टाइप करते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं
अब हम स्टेप 8 पर हैं अंतिम स्टेप
यहाँ अपनी सरल क्वेरी को एक अच्छा विवरणात्मक नाम देते हैं
नामे ओएफ थे क्वेरी लेबल के आगे लिस्ट ओएफ अल्ल मेंबर्स एंड थीर फोन नंबर्स टाइप करते हैं
अब ध्यान दीजिये कि विजार्ड में हम अपने चुनावों का एक ओवरव्यू यानि संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं
और यहाँ से हम आगे कैसे जाना चाहते हैं
चलिए उपरी दायीं तरफ डिस्प्ले क्वेरी विकल्प पर क्लिक करते हैं और फिनिश बटन पर क्लिक करते हैं
विजार्ड विंडो बंद हो गयी है और यहाँ एक नई विंडो है जिसका शीर्षक है लिस्ट ओएफ अल्ल मेंबर्स एंड थीर फोन नंबर्स
ध्यान दीजिये कि हम सभी चार सदस्यों उनके फ़ोन नम्बर्स के साथ देख रहें है जिनको हमने शुरू में मेंबर्स टेबल में प्रविष्ट किया था
साथ ही हम देख रहे हैं यह सूची वर्णमाला के आरोही क्रम में रखी गयी हैं
अतः यह हमारी पहली सरल क्वेरी है
यहाँ एक नियत कार्य है
एक क्वेरी बनाइए जोकि सभी पुस्तकों को आरोही क्रम में सूचीबद्ध करेगी
सभी फील्ड्स को सम्मिलित करिये
उसको लिस्ट ओएफ अल्ल बुक्स इन थे लाइब्रेरी नाम दीजिये
इसी के साथ हम लिबरऑफिस बेस पर विजार्ड का इस्तेमाल करके क्वेरीस बनाने के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने सीखा की कैसे क्वेरी विजार्ड का इस्तेमाल करके सरल क्वेरीस बनाएँ सिलेक्ट फील्ड्स फील्ड्स का क्रम निर्धारित करना और एक क्वेरी के लिए खोज मापदंड या नियम प्रदान करना
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा हैयह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद